पापड़ वगैरह कुछ भी होता है टाफियां आती हैं और इसके सामने एक ठेला लगाया है जो कि आमों का है।

ये एक पेट्रोल पंप है जो कि सड़क के किनारे वाक्य है यहां पे लोग अपने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में तेल--

जो कि घर की अब आए उम्म तन बनाने के लिए उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं।

जो भी यहां से पौधा कोई भी लेना चाहे यहां का गमला लेना चाहे वो यहां से खरीद सक--